इस वीडियो में सामने एक नदी दिख रही है और नदी.--

इस वीडियो में सामने एक हो मेडिकल का हॉल है और इस हॉल में डॉक्टर की टीम कड़ी हुई है और डॉक्टर की टीम --

पराठे रखे हुए हैं जो नाश्ते के लिए तैयार हैं और शुबह उन पराठों से नाश्ते कर सकते हैं।